कई बड़े छात्र नजर आ रहे हैं।

यहां एक बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

गुलदस्ते में मुझे एक हरे रंग का पौधा दिखाई दे रहा है।

आधुनिक यंत्र भी दिखाई दे रहे हैं।

जिस पर यात्री सफर कर रहे हैं।

तथा यहां कई व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

यहां दो व्यक्ति भी नजर आ रहे हैं।

इस दृश्य में मुझे किसी की दुकान दिखाई दे रही है।

यहां एक महिला मौजूद है।

यहां पानी भी नजर आ रहा है।